एक मशीन दिखाई दे रही है और--

मुझे एक शोरूम दिखाई दे रहा है।

कुछ मुझे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

कुछ ट्रक भी दिखाई दे रहे हैं वा--

और मुझे आग जलती हुई दिखाई दे रही है।

मुझे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।